बहोत सारी कुर्सियां पड़ी हुई है और बहोत सारे लोग हैं।

और कुछ लोग खड़े हुए है और साइड में जूते हैं।

और पास ही कुछ घर बने हुए हैं और कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

और पेड़ भी लगे हुए हैं दीवाल पर कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।

और ब्राउन कलर का एक टेबल रखा हुआ है जिस पर बहोत सारे प्लेट व एक गुलदस्ता रखा हुआ है।

और कुछ लोग सब्जी को खरीद रहे हैं और रोड पर बहुत सारी बाइक खड़ी हुई हैं।

और रेड कलर की दीवाल है जो दीवाल के पास छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।